खेलने के लिए झोला वगैरह डले हैं सीढ़ी है और वजन को--

जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ--

यहाँ पर बहुत सारी कुर्सियां रखी हैं चेयर।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर--

साथ ही बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और बीच में एक नदी है।

और एक बाइक खड़ी हुई है।

मैं देख सकता हूँ कि यह एक बहुत पुराना--

और कुछ बच्चियां लड़के दिखाई दे रहे हैं।

जो एक मिट्टी का मंदिर बनाकर वहाँ पूजन कर रहे हैं पेड़--

बहोत बड़ी तलाव देख पा रहा हूँ।

और कुछ घर टाइप का मकान दिख रहा है।

खंबे भी दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग भी।

खड़े हुए हैं बड़ा मैदान दिखाई दे रहा है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।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

जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ।

जैसे कि मैं देख पा रहा हूं एक हॉल में कुछ महिलाएं--

और एक बड़ी खिड़की भी है।

साथ ही प्लास्टिक के टब--

और पाउडर वगैरह अलवारी में रखे हुए हैं।

जैसे कि मैं देख पाहा रहा हूं यहां पर एक लड़की है जो--

एक नीले कलर का एरो बनाए हैं।

और यहां पर सफेद और लाल टोल्स टोल्स --

यह एक सेंट्रल मॉल है जिसमें बहुत सारे--

एक रजिस्टर रखा हुआ है साथ ही एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है एक--